एक रूम नीचे प्लस्टर हैं उसमे लोहा का घेरान है टी वी चल रहा हैं।

एक ट्रक है उसके साथ मिक्चर मसीन है उसके बगल मे बाला है उसके पास मे एक लोग खड़े हैं ।